फैब्रिक ग्रे कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्रीन बाउंड्रीज ग्रीन बाउंड्रीज ऑरेंज कलर की बिल्ड़िंग दिखाई दे रही है ग्रे हरा-भरा- -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

ये है शशि बुक सेन्टर है जिसकी जिसका बोर्ड ब्लू कलर का है। यहां पे स्टेशनरी मैगजीन और गिफ्ट आइटमस मिलते हैं। बाहर एक कबड़ है जो कि ब्राउन कलर का है और काफी सारी बुक्स भी टंगी हुई है।